सामने एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे एक रोड दिखाई दे रहा है एक ट्रक रखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है साथी ही एक ट्रैक रखा हुआ दिखाई दे रहा--